यहाँ पर एक ट्रे के अन्दर दो कप हैं और उन कप के अन्दर कॉफ़ी हैं और उनके साथ दो चम्मच भी हैं।